एक हॉल है हाल में कुछ फैन लगे हुए हैं कुछ खिड़कियां दिख रही हैं गेट लगी हुई है।

एक समान सामाजिक स्वास्थ्य केंद्र उम् आगे से पेंट किया हुआ व्हाइट कलर से।

एक चार मंजिला बिल्डिंग है। बिल्डिंग के नीचे कुछ गुब्बारे हैं ऊपर से लेकर के नीचे तक लाइटें जल रही हैं रंग बिरंगी --

पटरी बिछा हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं जो हाथ में झोला लिए हुए हैं कुछ दुकाने दिखाई दे रही हैं। ऊपर में वायर दिखाई दे रहा है।

एक गेट लगा हुआ है ऊपर में आसमान नजर आ रहा है। एक कुछ पेड़-पौधे नजर आ रहे हैं।

बगल में एक मालगाड़ी खड़ी है ऊपर में बिजली का वायर नजर आ रहा है।